ये कोई शॉप दिखा रखी है।

इसमें छोटी घास भी दिखा--

यह कोई क्रिसमस पार्टी की फोटो है इसमें एक कोई संता क्लॉस दिखा रखा है।

रेड कलर की और ब्राउन कलर टेबल्स हैं और इन के पास ब्लैक कलर की चेयर लगा रखी हैं।

और पीछे चेयर्स लगा रखी है।

और ये एक वॉटर सप्लायर भी लगा रखा है और एक कोई लड़का है जो कि रोलिंग चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और ये कोई टेबल पे --

ये कोई स्कूल जैसे कुछ बिल्डिंग दिखा रखी है।

कुछ चार या पाँच बाइक्स भीं हैं और एक लड़का भीं हैं जो बाइक चला रा--

ये कोई होल है। होल जैसा कुछ लगा रखा है।

और इसके बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे कपड़े भी सूख रहे हैं।

ये कोई सब्जी की फ्रूट की टपरी है उसकी फोटो दिखा रखी है इसमें बहोत सारी फ्रूट्स रखी हुईं हैं।

ये कोई मंडी की फोटो दिखा रखी है।

जिसमें तीन चार लोग कुछ सेलिंग कर रहे हैं और और लोग हैं जो इनको खरीदने के लिए इनसे बातें कर रहे हैं।

और एक लड़का है जो कि झूले के ऊपर खड़ा हुआ है।

और ये कुछ आयरन पिलर्स भी हैं लाइटनिंग के लिए और ये पेड़ पौधे वाला गमला भी है।

और वाइट कलर के पिलर्स भी दिखाई--

और इसके बाहर कुछ बोर्ड भी लगा हुआ है वाइट कलर में।

क्या पोस्टर लगा रखा है जिसमें एक हाथ--

और इसके साइड में मोबाइल फोन की कोई शॉप है जिसमें बहोत सारे ले--

और सामने ये चार फायर एक्सटेंशन रखे हुए हैं।

इसमें एक टेबल लगा रखी है जिस पे ग्रीन कलर का कोई कपड़ा है।

जिसके ऊपर अ तीन चार स्ट्रेचर्स दिखा रखे हैं।

एक वेटिंग मशीन भी रखी हुई हैं ऊपर स्लाइड भी लगी हुई हैं और--